उसी के पास कुछ अन्य पेड़ और कुछ मकान हमें नजर आ रहे हैं।

बाहर रोड भी हमें नजर आ रही है।

इस चित्र में हमें एक बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग पे व्हाइट कलर --